यह एक बुक हाउस हैं जिसमें बहोत सारी बुक्स वगैरा रखी हुई हैं।

सामने शॉप के अंदर एक पर्सन है और एक पर्सन बाहर खड़ा है सामने एक बाइक लिखी खड़ी है।

पेट्रोल डाल रहा है सामने एक पर्सन है।

हरी भरी घास भी लगी हुई है।

और वां रेड रेड सा भी कुछ दिख रहा है।

दी हुई है और कुछ स्कूटी वगैरह भी खड़ी हैं।

एक शॉप है जिसमें कुछ मेन्स वेयर के कपड़े रखे हुए हैं।

और ये सब रूम मे रखा हुआ है।

कुछ बच्चे और कुछ औरतें योगा कर र--

जिसके बोर्ड पर वाइन शॉप ठेका शराब लि--